कपड़ों का दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे जैकेट पैन्ट टंगे हुए हैं।

दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारे चिप्स के पैकेट टंगे हुए हैं दुकान के अन्दर एक आदमी--

बहोत सारे गमलो में पौधे लगे हुए है दरवाज़े का कलर --

बैंक है बैंक का बोर्ड ब्लू है बॉर्डर रेड है गेट का कलर ब्लू है सिढ़ी का कलर ब्लैक है।

रोड पर दो आदमी है अंदर एक आदमी बैठा है।

रूम है रूम के अन्दर बैलून दीवाल पे लगा हुआ है बैलून का कलर ब्लैक है।

वाइट है बॉर्डर रेड और ग्रीन है।

एक आदमी है लाइट ब्राउन जैकेट पहना है मफलर लगाया हुआ है।

मफलर का कलर वाइट है रेड बोर्डेर है।

व्हाइट है बॉर्डर लाइट ब्लू है एक लड़का है।

पिंक है वाइट है बहत सारे काउंटर लगे हुए है कोउन्टर का कलर --

ब्राउन है बोहोत सारे चेयर लगे हुए है काउंटर पे नंबर लिखा हुआ है।

शटर ग्रीन है दुकान के बहार सिलिंडर है कलर रेड है।

रूम है रूम का कलर व्हाईट है फर्श पे ब्लू कलर का कार्पेट बिछाया गया है कालीन है।

बुक का कलर ग्रीन है एक लड़का है जमीन पर बैठा हुआ है।

साइकल का दुकान है दुकान का कलर ग्रे है फर्श का कलर ग्रे है बहोत सारे साइकल रखे हुए हैं।

एक लरका है साईकल पे बेठा हुआ है ब्लैक कलर हाफ टीशर्ट पहना है।

हाथ में गिटार लिया हुआ है कलर ब्लैक है।

स्लाइड है स्लाइड का कलर ब्लू है ऑरेंज है एक लड़का है ब्लू कलर का हाफ टी शर्ट पहना है।

ब्लैक कलर का हाफ पैन्ट पहना हुआ है मुंह में मास्क लगाया है मास्क का कलर व्हाईट है।

चेयर है चेयर का कलर ब्लैक है।

पार्क है पार्क में बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं बेंच का कलर ग्रीन है रेड है ब्लू है।

येलो है स्लाइड है स्लाइड का कलर ग्रीन है।

येलो है ब्लू है एक लड़का का है हाफ वाइट कलर का--

टीशर्ट पहना है रेड कलर का हाफ पेंट पहना हुआ है।

एक लड़का है साईकल पे खड़ा है रेड कलर का हाफ टी शर्ट पहना है।

बैग लिया हुआ है जीन्स पेंट पहना हुआ है।

लेडीज के बालो में गजरा लगा हुआ है गजरो का कलर वाइट है।

ऑरेंज है एक लड़का है खड़ा है पिंक कलर का--

बेंच का कलर ब्राउन है वाइट है।

ब्लैकबोर्ड है कलर वाइट है बॉर्डर ब्राउन है।

रूम है रूम का कलर ऑरेंज है फर्श का कलर व्हाइट है बेड पे एक आदमी लेटा हुआ है।